की जरुरत तब पड़ती है। जब हम किसी ऑफिस का काम कर रहें हो। लैपटॉप वगैरह किसी भी चीज़ में या फिर कोई घर में मेहमान आ जाये तब हमें उनको कुर्सियों में बैठाना पड़ता है।

ऐसा लगता है जैसे कि पानी बारिश हुई हो और बस और छोटे साधन वगैरा रोड में जल हो जाने के कारण उनको निकलने में दिक्कत होती हो रही हो और लोगों को भी जिनको छोड़ने में रोड में दिक्कत होती है।

इस चित्र में कुछ शोफा वगेरा दिखाया गया हैं शोफा आज के टाइम में सभी की जरुरत हैं शोफा ज़्यादातर शादियों में --

ये कोई बड़ी मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है।